यहां पे कुछ लोगो का भीड़ भी है कुछ मैटर हो सकता है इसलिए डी_एम यहां पर आए हुए हैं।

यह एक रात का फोटो है और इसमें लाइट जल रही है जिस में मंदिर पूरा जगमग जगमग व्हाइट कर रहा है और कुछ लोग भी मंदिर के आगे सुकून पाने के लिए आए हुए हैं।